कुछ बच्चे आपस में फुटबॉल खेल रहे है जमीन पर--

मेज पर कुछ ट्राफियां रखी हुई है मेज का रंग सफेद है।

लाल काले पीले गुब्बारों से सजावट की गई है।

एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान लिखा हुआ है।

पूल पर एक व्यक्ति साइकिल पर खड़ा हुआ है। साइकिल में --

पास में कुछ व्यक्ति आपस मे बैठे हुए हैं एक व्यक्ति सीढ़ियां चढ़ के ऊपर की ओर जा रहा है।

आसमान नीला है कुछ बादल दिखाई दे रहे है।

दरवाजे के बाहर एक रेप और सीढ़ी बनी हुई है।

पेड़ पौधों के आसपास गाड़ी और एक कार खड़ी हुई है।

सोफे के आसपास नकली पौधे लगे हुए हैं।

जमीन पर हरे कलर की कारपेट बिछी हुई है।

एक मंदिर बना हुआ है मंदिर के अंदर शिवलिंग रखी हुई है शिवलिंग के आस--

साथ में एक अन्य सामान भी रखा हुआ है।

एक व्यक्ति खड़ा हुआ है बांस के बंबू लगे हुए हैं।